फ्लावर्स भी रेड कलर पिंक कलर वाइट कलर का लगा हुआ है |

साइड मिरर है और एक व्यक्ति है जो --